इस दृश्य में स्टूडेंट भी दिखाई दे रहे है।

इस दृश्य में बहुत सारे पेड़ भी नजर आ रहे हैं।

यह दृश्य एक कंप्यूटर सेंटर के बाहर का है।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

एक सिंटेक्स भी रखी हुई है और इसके अंदर तीन चार पाइपें भी रखी हुई नजर आ रही हैं।

इस मंदिर का कलर रेड है इस मंदिर के चारों ओर झंडे लगाए हुए हैं।

एक बैनर भी लगा हुआ नजर आ रही है।

जिन गद्दों का कलर मोस्टली ब्ल्यू और ब्राउन है।

इस दृश्य के अंदर कार सर्विस सेंटर नजर आ रही है।

एक कार का कलर व्हाइट और एक कार का कलर ग्रे भी दिखाई दे रहा है।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

यहां पे बहुत सारी पब्लिक इकट्ठा होकर जा रही है।

एक व्यक्ति एक कार को फोम वॉश करते हुए नजर आ रहा है।

यह दृश्य एक स्कूल के पार्किंग एरिया का है।

बहोत सारे स्टूडेंट्स और टीचर नजर आ रहे हैं।

सारे स्टूडेंट्स के शूज भी दिखाई दे रहे हैं।

यह दृश्य एक जेंट्स सैलून का है जिसके बाहर एक व्यक्ति खड़ा है।

टेबल के ऊपर बाल्टी भी दिखाई दे रहा है।

इस दृश्य में चार व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं जिसमें से एक व्यक्ति पानी में खड़ा है।

कुछ व्यक्ति काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं।

एक व्यक्ति उस भगवान की मूर्ति की पूजा करते हुए नजर आ रहा है।

इस दृश्य में एक नदी नजर आ रही है जिसके पास एक पुल है जिसके ऊपर से ये तस्वीर खींचा गया है।

बहोत सारे सामान रखे हुए नजर आ रहे हैं।

इस दृश्य में एक पेट्रोल पंप नजर आ रहा है।

जिस पेट्रोल पंप के पास दो व्यक्ति खड़े दिखाई दे रहे हैं।

इसी के पास लगी हुई बड़ी पेड़ भी दिखाई दे रही है।

छोटी छोटी घास भी दिखाई दे रही है।

यह दृश्य में सीड्स दुकान के बाहर का चित्र है।

अल्बेस्टर भी दिखाई दे रहा है।

इस दृश्य में एक बैंड बाजा वाला कार दिखाई दे रहा है।

एक जनरेटर भी नजर आ रहा है।